बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं इसके बगल में बहुत सारी बाइक भी लगी हुई है बहुत सारी खिड़कियां भी हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारे सामान नजर आ रहे हैं दुकान बहुत ही बड़ा है।

यह एक पेट्रोल टंकी है।

यह एक पेट्रोल टंकी है।

इसके ऊपर पंच सलूक लगा हुआ है।

पीछे अलवेस्टर का घर है।

सैलून के बाहर पानी का डब्बा भी रखा हुआ है पीने के लिए।